हरियाली है। पत्तियों का रंग हरा है। छोटे-छोटे खेत बने हुए हैं। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं छोटी-छोटी और आसमान --

मैदान में एक आदमी लेटा हुआ है और डॉक्टर उसके पैरों की मसाज कर रहा है। डॉक्टर ने हाथों में सफेद रंग के ग्लव्स --

सड़क के किनारे टिकट लिखा हुआ है जो की नीले बोर्ड पर पीले अक्षरों से लिखा हुआ है। लोहे के दरवाजे बने हुये हैं जो --